इस इमेज में मुझे जंगल दिखाई दे रहा है रास्ता--

इस इमेज में मुझे घर दिखाई दे रहा है उस पे लिखा हुआ है एम ए एर जी एर ए जी ओ एर आई --

आई_ये_एन ओसी एच_यू_आर_सी_ये चर्च --

इस इमेज में मुझे एक पहाड़ी- सी दिखाई दे रही है गुफा टाइप की --

इस इमेज में मुझे दो दीवाले दिख रही है बीच में एक ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जा रहे है और आजू-बाजू घर दिखाई दे रहे है।

बहोत सारे मोटर साइकिल रखी हुई दिखाई दे रहे है और पेड़ दिखाई दे रहे है।

उम्म इस इमेज में मुझे एक--